फूल के पौधे बेच रहा है बहुत सारे फूल के पौधे हैं गुलाब फूल गेंदा फूल --

यह चेक-अप अच्छी करती है यहां पर एक टेबल रखे गए हैं उस टेबल पर बोतल है।

लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते है यहां सेवन से लेकर --

फिसलन पर खड़ा है यहां पे ये लोग --

लेक करके फिसलता है यह पार्क काफी सुंदर है बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

काफी गाड़ियां चल रही है और बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग यहाँ पे है बाजार में बहुत से सामान बिक रहा --

पढ़ाई होती है यह पब्लिक स्कूल बहोत ही बड़ा है।

और चोंगे भी है यह डी.जे. हमलोग शादी विवाह --